नमस्कार conditional statements in awk पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम awk में if else else if के बारे में सीखेंगे
हम इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से सीखेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu linux 1604 operating system और gedit text editor 3201
आप अपनी पसंद के किसी भी text editor का उपयोग कर सकते हैं
इस tutorial का अभ्यास करने के लिए आपको हमारी website पर पिछले awk tutorials को देखना चाहिए
आपको किसी programming भाषा जैसे c या c ++ के साथ परिचित होना चाहिए
यदि नहीं तो कृपया हमारी website पर समरूपी tutorials को देखें
इस tutorial में उपयोगित files इस tutorial के पेज पर code files link में उपलब्ध हैं कृपया उन्हें डाउनलोड और एक्स्ट्रैक्ट करें
conditional statement हमें कार्य के क्रियान्वयन से पहले एक निर्दिष्ट condition की जांच करने की अनुमति देता है
देखते हैं कि conditional statements जैसे if else elseif awk में कार्य कैसे करते हैं
किसी भी programming भाषा की तरह ifelse statement का syntax हैः
if conditionalexpression1 true है तो action1 क्रियान्वित होता है
else if conditionalexpression2 true है तो action 2 क्रियान्वित होता है
इसके बाद और भी else if statements हो सकते हैं
at में यदि कोई भी निर्दिष्ट conditional expressions true नहीं हैं तो action n क्रियान्वित होता है
else और elseif portions optional है एक उदाहरण के माध्यन से देखते हैं
हम उसी awkdemo txt फाइल का उपयोग करेंगे जिसे हमने पहले सेव किया था
मान लीजिए हमें 8000 रूपये से अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए स्टाइपेंड में 50% वृद्धि करने की आवश्यकता है
इस condition के लिए एक awk file बनाएं
text editor में दिखाए गए अनुसार निम्न code type करें और cond dot awk के रूप में इसे सेव करें पहले यह पहले ही किया है
समान file code files link में भी उपलब्ध है
इस code में हमने output field separator को colon set किया है
पहला print statement field headings print करता है
आगे if statement जाँचता है कि क्या छठी field की value 8000 से अधिक है
यदि हाँ दूसरा print statement निष्पादित होगा
$6 into 15 इस print statement में छठी field value को 15% से गुणा करेगा
अब इस code को निष्पादित करें
ctrl alt और t कीज दबाकर terminal खोलें
cd command का उपयोग करके उस folder पर जाएं जिसमें आपने code files को downloaded और extracted किया है
awk type करें: awk space hyphen capital f pipe symbol double quotes में space hyphen small f space cond dot awk space awkdemo dot txt एंटर दबाएं
output केवल एक छात्र के बढ़ते स्टाइपेंड के साथ record दिखाता है जिसने condition पूरी की थी
अब मान लीजिए कि नियम बदलता है 8000 रुपये से अधिक पाने वाले छात्रों के लिए स्टाइपेंड में 50% की वृद्धि
अन्यथा 30% वृद्धि दें
हमें एक else block जोड़ने की आवश्यकता है
एक बार फिर से cond dot awk file पर जाएं
आखिरी क्लोजिंग curly brace के पहले निम्न code की line जोड़ें एंटर दबाएं
else enter दबाएं
print space dollar 2 comma dollar 6 comma dollar 6 into 13
file सेव करें और terminal पर जाएं
पिछली निष्पादित command को प्राप्त करने के लिए अप arrow की दबाएं और enter दबाएं
अब output देखें
फिर से नियम बदलें 8000 रूपये से अधिक पाने वाले छात्रों के लिए 50% की वृद्धि
4000 रूपये से अधिक पाने वाले छात्रों के लिए 40% वृद्धि अन्यथा 40% वृद्धि दें
code पर जाएं दिखाए गए अनुसार code को अपडेट करें
file को सेव करें और terminal पर जाएं
terminal साफ करें
पिछली निष्पादित command को प्राप्त करने के लिए अप arrow की दबाएं और enter दबाएं
इस समय ध्यान दें कि छात्र mira nair को 40% की वृद्धि मिली
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं
संक्षेप में इस tutorial में हमने awk में conditional statements जैसे if else else if के बारे में सीखा
एक नियतकार्य के rules में नियमों के आधार पर grades देः यदि मार्क 90 से अधिक या बराबर हैं तो grades a होगा
यदि mark 80 से अधिक या बराबर लेकिन 90 से कम हैं तो grade b होगा
यदि mark 70 से अधिक या बराबर लेकिन 80 से कम हैं तो grade c होगा
यदि mark 60 से अधिक या बराबर लेकिन 70 से कम हैं तो grade d होगा अन्यथा grade f होगा
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
spoken tutorial project team spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएँ आयोजित करती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने पर प्रमाणपत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
क्या इस spoken tutorial में आपको कोई प्रश्न है कृपया इस साइट पर जाएं
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है इस मिशन पर अधिक जानकारी दिखाए गए लिंक पर उपलब्ध है
यह script विकास द्वारा अनुवादित है मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुडने के लिए धन्यवाद